आसमान दिख रहा है। बहोत दूर तक ही पानी-पानी दिख रहा है और बहोत सारा इसमें नाव है।

यहाँ गांव का सीन है और गाँव में यहां पे सब खेती हुआ है। खेत का सीन है ठंडी का मौसम है और यहाँ पे सब लोग --

हरे - हरे झाड़ियों से सजाया गया है फुल से सजाया गया है कोई ढोल बजा रहा है और कोई बांसुरी बजा रहा है कोई --

लोखंड से पिलर पड़ा हुआ है खम्बा है और बहोत बड़ी - बड़ी मशीन यहाँ पे है।